यहां पर एक है फुटकर व्यापार की दुकान है जिसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर हाथों हाथ पासपोर्ट फोटो साइज ।

यहां पर मुझे एक अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है अच्छा दृश्य होते है वो देखने के लायक होता है यहां पर --

बादल भी दिखाई दे रहा है बादल तीन प्रकार की होते हैं पेड़ पौधे भी है।

फुटकर व्यापार की दुकान है मालाओं का यहां पर बिक्री किया जाता है अनेक प्रकार की मालाएं हैं इनका रंग भी अलग अलग है जैसे कि लाल सफेद गुलाबी अन्य रंग भी है।

यहां पर बहुत ही अच्छी से सजावट की गई है एवं साफ सफाई भी अच्छी है गमले में पेड़ पौधे लगे हैं।

दृश्य दिखाया गया है यहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छी से तस्वीर ली गई है।

बहुत ही अच्छे दी हुई तस्वीर है बहुत ही अच्छी तस्वीर है यहां पर देखने में भी अच्छी लग रही है।

यहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है फुटकर व्यापार की दुकान है रंग अलग अलग किस्म की पुस्तकें हैं और दीवार पर तस्वीरें भी लगी हुई है।